इस तस्वीर में सामने एक कार लगाया हुआ--

सीढ़ी जाने के लिए बनाया हुआ है सीढ़ी।

यहां पे एक आदमी खड़ा है जो कि लोवर टी शर्ट पहना है।

सीढ़ी बनाया गया है चढ़ने के लिए।

ये गेंदा का माला है गेंदा के फूल का।

रोड पे का सीन दिखाई दे रहा है।

ट्रक पे का सीन है।

जो की सीमेंट वाला इटा है रेड कलर का।

यहां पे सामने सीएट लिखा हुआ है सीएट टाय --

यहां पे एक सोफा लगाया हुआ है और टेबल ।

मिरर में एक लड़का दिखाई दे रहा--

लाइटों का कलर जैसे ब्लू ग्रीन येलो रेड ऐसे करके है।

इस तस्वीर में सामने बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जोकि दो तल्ला है।

बाइक स्कूटी ऑटोस चल रही है।

स्टेयर्स लगाई हुई है पोल गढ़ा हुआ है।

और मिरर्स रखे गए हैं।

मशीन वगैरा रखी गई है लोहे की।

हीटर रखा हुआ है।

वो फोन कर्व्स रखा हुआ है।

बहुत सारे बैनर्स चिपकाए गए हैं जियो फोन के।

यहां पर सामने एक तस्वीर दिखाई दे--

इसके ऊपर घासे भी जम गई --

बहुत सारे घासे पेड़ पौधे लगाए हुए--

इन्होंने कंफर्टेबल क्लॉथस वेयर किया हुआ है।

लाइटें लगाई हुई हैं यहां पे।

इंश्योरेंस ऑफ एल_आ_ईसी मोटरसाईकल कार टेम्पू एक्से--

सामने एक दुकान है और एक शटर क्लोज है एक शटर ओपन है जिस पर लिखा हुआ सी_एन_जी रेट्रोफिटमेंट सेंटर ।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग का पिलर दिखाई दे रहा है जो की वाइट कलर का है।

और ये कोई बिच के किनारे का सीन है।

गोदाम के अंदर तरह तरह के सामान रखे हु--

कलर जो है बोर्ड का वो रेड --

पीछे जो बिल्डिंग है और ओ बिना प्लास्टर का--

सामने में बोर्ड टांगा हुआ है जिस पे कार अलग अलग कार की तस्वीर तस्वीरे बनाई हुई है।

फ्लावर से डेकोरेट किया गया है।

व्हाइट कलर का कवर है चेयर का।

इस तस्वीर में सामने एक बड़ा सा स्टेज दिखाई दे रहा है।

यहां पे पट रेलवे पटरी दिखाई दे रहा है रेलवे क्रॉसिंग ।